इ कउनो बड़ा सा बैंक का--

और साफ सुथरा वाला सड़क के किनारे एक बैठने वाला कुर्सी लगल है।

और इस साइड के दीवाल में हमें कुछ अलग अलग सामाने भी दिखाई--

इहवां एगो ए_टी_एम दिखाई दे रहा है इस ए_टी_एम के अंदर हमें दु ए_टी_एम मशीनें दिखाई पड़ रही हैं।

लगी हुई हमको दिख रही है इतनी लोहे की वायर --

उसको बनाया जाता है यह उसी प्रकार का बहुत ही सुंदर सा हमें कु--